एक ए.टी.एम. है जो ए.टी.एम. बहुत अच्छा सुविधा देती है बैंक मे लाइन नहीं लगना होता है पैसा निकाला जाता है।

फ्रॉक है फ्रॉक बहुत अच्छा है इस को हम यहीं पे से ले सकते है और बहुत आसानी से मार्केट में जैसा चाहें वैसा मिल सकता है इसे ले सकते है।

और लाइन मे इसी तरह लेके खाया भी जाता है और --

और मेल में सारी चीज खाने-पीने की जुड़वा मिलता है जो की बहुत अच्छा --

ये चावल दाल सब्जी है जो कि हमलोग के यहां के नॉर्मल है और सलाद है।

ये पहाड़ पहाड़ है पहाड़ पर से झरना गिर रहा है जो की बहुत ही सुंदर लग रहा है।

ये-ये सिम का दुकान है जो कि आइडिया का सिम यहाँ मिलता है।

ये क्लास - क्लास रूम है जो की बहुत ही अच्छा है और ची लें बेंच भी बहुत अच्छा लगा हुआ है साफ-सुथरा भी है यह तक की फैन भी है।